यह कंपनी है यह कंपनी है जहां हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं।

यह गज़रा है यहाँ अपने गाड़ी दूल्हा बने रहते हैं उस टाइम गाड़ियों को सजाने में भी काम देता है।